जैसे हॉर्लिक्स बाल में लगाने वाला कलर और अन्य समान भी रखे हुए हैं।

जिसका कलर भूरा है कार का सामने का हिस्सा खुला है।

ऊपर व्हाइट कलर का बेयर शीट है।

यह एक लड़के का तस्वीर है जोकि खेत मे लिया गया है।

इस तस्वीर मे दो बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड के बीच मे रोड है एक--

और गुलदस्ता रखे हुए हैं सामने दो ब्लैक कलर का कुर्सी लगा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है।

नीचे डंबलस धरे हुए हैं कोने में पानी का बाटल है।

यह एक मंदिर का तस्वीर है जो कि काफी बड़ा--

जो ग्रे कलर का है उसपे एक फोन धरा हुआ है।

दीवाल का कलर सफेद है काउंटर के अंदर दो आदमी बैठे हुए है सामने सैनिटाइजर --

डिब्बा में है सामने कुछ सामान लटकी हुई है नीचे एक मीटर तराजू रखा हुआ है।

नीचे कार्टून पे कार्टून रखे हुए हैं।

नीचे एक बकेट रखा हुआ है नीचे छोटे-छोटे कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं।

एक ठेले पे एक आदमी खड़ा है ठेले पे तरबूज मोसम्मी--

यह एक बडे से मंदिर का तस्वीर है।

रक्तदाता लिखा हुआ है सामने कुछ पानी के बॉटल रखे हुए हैं नाश्ता का पैकेट --

बहुत सारे गमले में कुछ पौधे लगाए हुए हैं।

इसमें फूल लगा हुआ है सामने दो कमल फूल आकार का।

सारी कार कतार वॉइस खड़ी है।

कार को छू कर एक लड़का खड़ा हुआ है नीचे ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट धरा हुआ है।

एक छोटा सा पाइप दिखाई पड़ रहा है आसमान ग्रे कलर का है।

सामने सूखे पत्तो से एक पेड़ लदा हुआ हैं राइट में ग्रीन कलर का ढेर सारा पत्ता है।

नीचे काफी अच्छा सफाई हुई है पोल के बगल में एक पेड़ लगा हुआ है।

गेट पे भी झालर लगा हुआ है एक बुजुर्ग बास पर चढ़े हुए हैं।

लाल कलर का गमला में हरे बड़े पौधे लगाये हुए है।

जिसमें से पांच लोग ब्लू ट्राउजर ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है।

जिसका कलर आसमानी है।

जो की बेहद ही सुन्दर लग रहा है। काफ़ी साफ सफाई नजर आ रहा है।

गेट का कलर आसमानी है एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

पीछे ढेर सारे बड़े बड़े हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

नीचे छोटे छोटे पौधे लगे हैं।

इसमें रिबन बंधा हुआ है सामने गुलाबी कलर का लाइट जल रहा है।

लेफ्ट में एक बड़ा सा घर है जिसका कलर घ्याई कलर --